इस तस्वीर में हमे एक औरत की तस्वीर दिखाई दे रही है जहा पाइप है पानी दे रही है औरत और पेड़ पौधे दिखाई दे --

इस तस्वीर मे हमे दो तीन मूर्ति दिखाई दे रहा हैं बाबासाहेब आंबेडकर का तस्वीर दिखाई दे रहा कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे है।

पीछे लाल और हरे रंग के कारपेट नज़र आ रही है फॉक्स नज़र आ रहा है पीछे एसी नज़र आ रहा है लाइट्स नज़र आ रहे है।